जिसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं कुछ एक्टिविटीज हो रही है अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटीज हो रही है।

जिसने स्वेटर पहनी है वाइट शर्ट पहनी है ब्लैक पैंट पहनी है चप्पल पहनी है और मास्क भी लगाया और साथ में फोन भी चला रहा है।

यहां पे एक रोड दिखाया गया है जहां पे सब्जियों की दुकान लगी हुई है।

बहुत बड़ा है और बादल और ये ब्लैक कलर के हैं जो आ--

बत्तिक आपस में ब्लैक कलर की चौच एक बतख की चौच नीचे है एक भत्तक की चौच ऊपर है और बीच में छोटा जैसा हारी जैसी घास दिख रही--

और रोड को दिखाया गया है रोड बहुत लंबा है नया नया रोड बन रहा है यहां पे।

यहां पर एक देली वाई को दिखाया गया है ये हॉस्पिटल को दिखाया गया है।

अपनी अपनी जगह में पड़ रहे हैं अपने-अपने ध्यान में मग्न हुए हैं और यहां पर सरस्वती माता जी की एक मूर्ति भी है।

मूर्ति के ऊपर एक कलेश चढ़ाया हुआ है जहां लोहे का जहां से पानी नीचे निकल रहा है मूर्ति के ऊपर गिर रहा है और एक घंटी है मंदिर के ऊपर--

और मरीज को दिखाया गया है एक मशीन रखी गई है यहां पे और--

ऊपर एक हॉल को दिखाया गया है जहां पे टी_वी लगी हुई है और इसके अटैचड बॉशरूम है जहां पे टॉयलेट शीट बिछाई गई है।

एक फ्रिज है यहां पे लगेज बैग भी है तीन चार लगेज बैग भी है और यहां ब्लैक कुछ अलग कलर के है यहाँ पे --